नदी के दूसरे कोने में एक बड़ा जंगल बना है। टापू बना है हरा कलर के बहुत सारे घास उगी हुई है। बड़े-बड़े पेड़ उगे हैं इसमे।